कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं पेड़ दिख रहे--

बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

एक डांसिंग क्लास है यह सभी डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं।